दिखाई दे रहा है काफी सारा --

गेंदा फूल यूज़ करते हैं सभी प्रकार का रखा हुआ है ।

पहाड़ों के बीच बहुत बड़ी हैं ।

ई देखिये आपस में बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए काफी कैंडलस जलाये हुए हैं ।

ये काफी लोग इक्कठे हुए हैं भीड़-भाड़ दिखाई दे रहे हैं ये कारीगर वगेरह भी हैं कुछ फंक्शन वगेरह लगता है यहाँ पे हो रहा है ।

और बच्चे काफी एन्जॉय कर रहे हैं बच्चे उसके इलावा बच्चे बहोत ही पसंद होते हैं छोटे-छोटे बच्चे के लिए पसंद करते हैं ।

देखिए यह वेल्डिंग है और वेल्डिंग के --

नहा रहे है कोई पूजा भी कर रहे कुछ लोग देखिए नदी के ऊपर कोण के उधर पानी आ गया है कैसे लोग देखिए गाड़ी को किस तरह से खिंचके ले जा रहे है।

और एक कार है ऑटो है ऑटो पे चल रहे हैं दिखाई पड़ते हैं दिखाई दे रहे हैं ।